इसमे एक ग्राउंड जिसमे बास्केट बॉल वग़ैरा खेलते होंगे और उसका म उसमे मैपिंग किया गया है।

कुछ यहाँ पे शो पत्ति लगा हुआ है जो काफी जगह को अ- मम- अ- सुनहरा और ननिहाल बनते है वहीं पे झरना की तरफ पानी गिर रहा है उसी के बिच में लाईट का फुवारा आ रहा है।

और कुछ जगह हारा-भरा दिख रहा है कुछ पीला-पीला दिख रहा है मतलब मुरझाया हुआ है बदल यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है।

और सफेद कलर मे दिख रहा है स्टेच्यु इसमें स्टेच्यु के लगे हुए चारो तरफ से फुवारा पानी का निकल रहा है।

इसमें कुछ सामान है उसके उस तरफ छोटी-छोटी उम उम तीन डिब्बे दिख रहैं हैं जिसमें अ अपना ढक्कन लगा हुआ है और एक बड़ा सा बाल दिख रहा है जिसको उल्टा करके रखा गया है।

और अ अलग-अलग बेचने वाले अपना लाईन से अपना अ मछली को लगाकर रखे है ट्रे मे--

एक बहुत बड़ा संविधान है सामने फुटबॉल का गार्डन है बहुत खुला आसमान नजर आ रहा है एक हम भी लगे हैं बिजली की तरह जा रही हैं।

बहुत बड़ा मैदान है मैदान में बहुत से लोग खेल रहे हैं मैदान के सामने बहुत ज्यादा पौधे हैं पौधों के पीछे आसमान नजर आ रहा है।

एक ग्राउंड है उसमें लोग खेल रहे हैं उसके सामने एक रोड है।

ग्राउंड हैं यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी खेल-खेल रहे हैं और खी खिलाड़ी लोग सब अपने-अपने आ म म म मैदान पे अपने-अपने स्थल पे जमे हुए हैं वही पे दुर में मुझे वृक्ष दिखाई पड़ रहा हैं।

दूर है इनके आजू-बाजु में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे बना हुआ है कुछ लोग ग्राऊंड के दूर में दिख रहे है।

और बड़ा-बड़ा वृक्ष दिख रहा है उस तरफ एक टावर भी दिख रहा है और ये जगह जो है काफी खाली है और काफी बड़ा है।

दूर मे बाउंड्री बना हुआ है यहीं से स्टेसन तार गया हुआ है टॉवर का--

और ये बहुत बड़ा ग्राउन्ड है यहाँ पे बड़ी सी बड़ी दो बिल्डिंगे दिख रहा है दूर में काफी घाना जंगल दिख रहा है इस तरफ भी कुछ बड़ी ईमारते दिख--

ये रोड की सुंदरता को अ- म- बढ़ाता है और म- ये काफी लम्बा रास्ता दिख रहा है।